बैठने के लिए चेयर लगा है।

कुछ बच्चें लोग कैंडल पकड़ के खड़े है।

ये एक बुक स्टोर का दुकान है।

हॉस्पिटल रात में खिंचा गया है इसका फ़ोटो लाइटिंग जल रहा--